इस दृश्य में एक शोरूम का चित्र है।

और रिक्से और साइकल को प्लास्टिक से रैप किया हुआ है।

इसमें ई मार्ट एवरीडे लिखा हुआ नजर आ रहा है।

और एक गमला में फूल भी लगा हुआ--

इस मस्जिद के ए साइड बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं।

इस दृश्य में एक हॉल का चित्र है।

इसमें बहुत सारे साइकल लगे हुए नजर आ रहे है।

एक आदमी पीला कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और लूंगी पे--

इस दृश्य में एक मैदान का चित्र है।

और एक चपानल भी लगा हुआ है।

जो कि शर्ट और पैंट पहना हुआ है।

इस बोर्ड में केरला होटल लिखा हुआ है।

बाइक और स्कूटी भी खड़ा किया हुआ है और पेड़ पौधे--

बोरे का कलर व्हाइट और पिला हैं।

और एक पेट्रोल पंप भी है।